यहाँ पे हमको एक टेबल दिख रही है टेबल लकड़ी की बनी हुई है पीछे फ्रीज दिखाई दे रहा है यहाँ पे कॉफ़ी का मग दिखाई दे रहें हैं कॉफी बनाने की टंकी दिख रही है लड़का दिख रहा है लाल कलर की टी-शर्ट पहनी है।

दिन का समय दिखाई दे रहा है रास्ता दिखाई दे रहा है कुछ सफ़ेद भी दिख रही है। हरा बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है। मुर्ति यहाँ पे सजा हुआ है लाल हरे नीले पिले कलर से रास्ता है सफ़ेद कपड़े पहने हैं लाल कपड़ा --